और उसका कलर लाल और स्लेटी आसमान का कलर सफेद है।

है रोशनी का कलर सफेद है रस्सी का कलर पीला है बोतल का कलर सफेद है।

एक व्यक्ति बैठा है कपड़ों का कलर काला है बैनर है उसका कलर लाल है सामने एक बैग है उसका कलर भी लाल है।

सामने एक सीढ़ियां है उसका कलर पीला है एक बाइक खड़ी है का कलर कला भूरा --

उसका कलर ब्राउन है सामने छोटी छोटी घास है उसका कलर हल्का हरा है।

गाय हैं उसका कलर काला है।

पानी का कलर पर्पल है और सामने घास में का कलर हरा है पत्थर का कलर ऑरेंज है आसमान है जिसका कल --

खंभा है उसका कलर सलेटी है फर्श है उसका कलर काला है सामने पौधे हैं उसका कलर हरा --

पेड़ का कलर काला है फैंस का कलर ब्राउन है एक व्यक्ति बैठा है तीन के --

सलेती है व्यक्ति का कलर ब्राउन है बस का कलर सफेद और लाल है आसमान का कलर सफेद और काला है।

दीवार का कलर हल्का ग्रीन है चेयर का कलर भूरा है स्टोर का कलर भूरा --

घास का कलर ब्राउन है बिल्डिंग का कलर भूरा है आसमान का कलर सफेद है।

सामने बैनर है उनका कलर पर्पल है कार का कलर सफेद है सीढ़ीओ का कलर काला है रेलिंग का कलर स्लेटी है।